यह महामु‍नि बुद्ध मंदिर हैं और ये महामुनि बुद्ध देवता की मूर्ति हैं मूर्तिपूजा हिन्दुओ में प्रचलित हैं।

जैसे कैलेंडर पेंटडायरी पेंसिल रबर ।

यह एक नृत्य परिवेषण है यहाँ नृत्यनी सफेद और लाल रंग के जोड़े में खड़े हैं।

इहाँ शादी का रस्म चल रहा है शादी नहीं बल्कि हल्दी हो रहे हैं।

यह एक शादी का घर लग रहा है यहाँ शादी का फंक्शन जारी है बहुत सारे चेयर और टेबल लगा हुआ है।

यहां एक नाव है और नाव में बैठे हैं कुछ यात्री नाव के शुरू में बैठे हैं नाव के चालक जो की नाव को किनारे की तरफ ले आ रहे है।

यह एक नदी या समुन्दर है। यहाँ नाव चलाया जा रहा है।